और उसके उ अगल बगल में एक आदमी और एक कुर्सी रखी हुई है।

इस इमेज में एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा हैउस ग्राउंड के बीच मे एक सड़क गया हैऔर उस सड़क पे कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहे है|